दो लड़के खड़े हुए हैं एक काली टीशर्ट पहने हुए हैंऔर साइड वाला फोटो खींच रहा है साइड में एक लड़की दिखांच में दिख रहा है।

सामने कुछ टेबल दिख रही हैं जो नीले कलर की हैं जिनके ऊपर बहुत से पेपर और कुछ सामान रखा हुआ है पीछे लड़के खड़े हुए है और--

सामने एक महिला खड़ी है जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं और नीचे फर्श रंगीन कलर का दिख रहा है और ऊपर दीवार--

पीली ग्रीन दिख रही है जिसके नीचे सफेद और--

सामने एक सोफा दिख रहा है जो काले कलर का है जिस पर दोनीले तकिए रखे हुए हैं और सामने एक--

बाहर तीन आदमी खड़े हुए हैं एक बैग टांगे हुए है और एक झोला टांगे हुए है और सामने --

कुछ बड़े भगवान जी की फोटो रखी हुई है और ऊपर रंगीन फूलों की झालार--

एक कार खड़ी हुई है सामने दो आदमी दिख रहे हैं ऊपर सफेद आसमान--

बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं और पीछे लाइन से ला कथाई कलर के गुलाब के बहुत--

कोई सफेद दिख रही है और कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं सामने एक नीचे मोटरसाइकिल दिख रही है और छत पर कुछ साइड में रख--

कुछ कपड़े रखे हुए हैं और नीचे चप्पल दिख रही हैं सामने एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा है जिसके ऊपर ए_सी लगा हुआ--

सामने एक टेबल दिख रख दो टेबल दिख रही हैं जिनके आमने सामने कुर्सियाँ रखी हैं जो ग्रीन और --

एक सफेद कलर की दिख रही है और सामने दीवार पीले कलर की है जिस पर एक --

जिसमें ग्यारह पैंतीस हो रहे हैं और सब ऊपर --

की और नीचे लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ है।

और क्रीम कलर की चार पट्टियाँ बनी हुई हैं और दो कुर्सी रखी हुई हैं टेबल पर एक ऑरें --

बने हैं जिनमें कुछ बॉक्स दिख रहे हैं और निच इस साइड बेड के बहुत सारे गद्दे दिख रखे हुए हैं और सामने --

नीचे मोटरसाइकिल और कुछ कार दिखाई दे रही हैं और साइड में एक ट्रक दिख रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ दिख --

सामने एक घर दिख रहा है जिसमें ऊपर सफेद टीने हैं और एक सफेद पोस्टर लगा हुआ है जिसमें पराग --

रहा है और साइड में एक और मशीन रखी हुई है ऊपर छत --

बहुत सारे टायर रखे हुए हैं सामने एक दीवाल है जो सफेद कलर की है।

और साइड में एक अअअअ और भी चक्के रखे हुए हैं।

और सामने दीवाल ऑरेंज कलर की है जिसमें बहुत सारे फोटो --

सामने एक सोफा दिख रहा है जो सफेद कलर का है जिसमें तकिए लाल कलर के हैं और नीचे सीट सफेद कलर की है।

अ दीवाल बनी हुई है और नीचे फर्श लाल दिख रहा है और कुछ सफेद फूल दिखाई दे रही--

सामने एक गार्डन दिख रहा है जिसमें बहुत से एएए एक सामने झूला बना हुआ है जो बदक वाला है।

और दूर एक सरक दो सरकपट्टी दिख रही हैं जिन पर बच्चे सरक रहे हैं नीचे --

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें बाहर बहुत सारे बैग --

औ कुछ अअअ बैक बैग और स हैंड बैग टंगे हुए हैं जो अलग अलग कलर और --

अलग अलग डिजाइन के हैं कुछ बच्चों वाले बैग हैं ऊपर बड़े बड़े दो पोस्टर लगे हुए हैं।

और नीचे कुछ महिलाएँ दिख रही हैं और कुछ ट्रॉली बैग दिख रही।

एक छोटा मोबाइल दिख रहा है और एक कैसेट रखी हुई है और ऊपर कंप्यूटर पर ग्रीन --

रीड लिखा हुआ है और पीछे दीवाल पर एक फोटो लगी हुई है जि --

सामने एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमें बहुत सी कार हैं और सामने तीन स्कूटी दिख रही हैं दोनों साइड कार खड़ी हुई हैं और सामने --

सामने एक हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो लाल कलर की हैं जिनमें आदमी और महिलाएँ --

लाइट लगी हुईं है और पीले अ ऑरेंज म्म ग्रीन और सफेद तीन तीन गुब्बारे बहुत सारे लगे हुए हैं सामने --

सामने एक अअअ इन टॉयलेट दिख रहा है और एक सफेद बाल्टी रखी हुई है जिसकी बगल में एक कचड़े का डिब्बा --

एक अअअ म बोर्ड दिख रहा है और कुछ बल --

सामने एक बैंक दिख रही है जिसमें ऊपर सफेद कलर है और एक नीले कलर का पो पोस्टर लगा है जिस पर एच_डी_एफ_सी बैंक --

धांगू रोड पाथान कोठ ब्रांच लिखा हुआ है और नीचे काँच का गेट है।

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें सामने रैक बना हुआ है ऊपर एक टोकनी रखी है और कुछ बॉटल रखीं हुईं हैं।

और दो सब्जियाँ दिख रही हैं पीछे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसपर वंश --

पिंक कलर की और ग्रीन कलर की पीले कलर की सर्किट लगी हुई है और नीचे बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा है।

पीछे एक फ्रिज दिख रही है जिसमें अंदर कोकोकोला माजा स्प्राइट की बोटल दिख रही हैं और साइड में बहुत सारे रै --

इंटेक्स एल_जी ब्लू स्टार वॉलेट लिखा हुआ है नीचे बहुत सारे बड़े-बड़े--

ऐ उ फ्रिज के बॉक्स रखे हुए हैं और अंदर कुछ कूलर दिख रहे हैं सामने दीवाल पर --

ककड़ी मूरे और हरी मिर्च नींबू रखे हुए हैं साइड में एक रायता दिख रहा है और सामने एक टोकनी में रोटी रखी.